इस तस्वीर में हमें अमूल पिज़्ज़ा लिखा हुआ है।

आती उत आकर्षित कर रहा है। एक घर का कलर सामने जो अ उसका कलर सफ़ेद है और पेड़ का कलर --

अ ग्रे कलर का है साइड मे कुछ सीढ़ी नज़र आ रही है और उसके साइड मे जनरेटर लगा हुआ है मार्ट के अंदर बहुत सारी --

चार प्लेट ओंधी है उल्टी है और दो प्लेट में बिरयानी रखी है | उन बिरयानी के साथ दो चम्मच लगे हैं | सामने पानी की दो बोतल रखी है टिश्यू पेपर रखा है और कुछ चम्मच --

ए.टी.एम. और सामने एक चैनल गेट लगी हुई है और साइड --

कुरता और ग्रे कलर का प्लाजो पहना हुआ है उसने वो एक नीचे --

इस तस्वीर में हमें एक घर दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे मजदूर अपना-अपना काम कर रहे हैं सामने रेत का ढेर और गिट्टी का ढे ढेर डाला हुआ है।

इसमें एयरटेल मोबाइल की दूकान भी है इसमें एम.आई. की दूकान भी है इसमें बैंक भी है ।

उनकी जगहे स्लेटी कलर से बनी हुई है और लाल कलर की अ कुर्सी लगी हुई है ऊपर बहुत सारी लाइटिंग लगी है और ग्रे कलर का छत है ।

इन मछलीए ये मछलियां कही पलंग पर लेटी हुई है।

दिव्य येलो कलर से दिव्यांश बुक ह स्टोर लिखा हुआ है।